मकान के सामने मिट्टि का ठेर दिखाई दे रहा है मकान --

बकेट में रखी हुई दिखाई दे रही है डालिये में रखी हुई दिखाई दे रही है।

कढ़ाई रखी है कढईए के ऊपर एक ट्रे रखा है ट्रे में जलेबी रखी है जलेबी-

बहोत सी बॉटल रखी हुई है बॉटल कुछ हैंड वाश की दिखाई दे रही है कुछ पानी की दिखाई दे रहे हैं।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

ट्रांसफरवा में बड़े-बड़े खंभे लगे हुए दिखाई दे रहे है तार लगे हुए दिखाई दे रहे है बॉक्सेस बने हुए--

ब्रैकेट भी रखी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे दो लेडीज बैठे हुए दिखाई दे रहै है एक कुछ सामान देखते हुए दिखाई दे रही है और एक दिखाई --

बहोत सी बॉक्सेस बने हुए दिखाई दे रहे है लाइट लगे हुए दिखाई दे रही है कुछ छोटे लाइट दिखाई दे रही हैं कुछ बड़े लाइट -

पूल के बाजू से एक खंभा भी दिखाई दे रहा है।

बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है रैलिंग लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और कुछ फर्नीचर भी दिखाई दे र--